बांस का तो खंभा लगा हुआ है।

खिड़की देखने को मिल रहे है।

यह एक सिटी है यहां बहुत सारे बिल्डिंग है।

यह एक घूमने का पर्यटल स्थल है।

यहां पर कई सारे आदमी बाहर से घूमने के लिए आते--

बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे है।

और यहाँ से बहुत से पर्यटक स्थल बाहर से घूमने के लिए देश से आते है।

सारे बैलून लगे हुए हैं।

एक वच्ची जो पढ़ रही है।

में हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

और टाइल्स सब येलो कलर के लगे हुए हैं।

यहां एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है जहां बाहर से दो बाइक खड़ा हुआ है।

यह एक शादी का घर है।

इसमे कई सारे लाइट हरे भरे लगे हुए है।

एक अंकल जो कुर्ता पहने हुए हैं उसके आगे भी स्टैचू लगा हुआ--

और साइड साइड में लोहा के खंभे लगे हुए हैं।

मैट इसमें रेड कलर का लगा हुआ है।

तीन चार लाइट लगा हुआ है।

बाहर में बालकनी में ग्रील लगा हुआ है।